और इधर उधर यहां पर बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

एक लाइट भी दिख रही जो बहोत सुंदर है।

बहोत चश्मा न ब्लैक कलर के है।

ओर यहां मुझे कुछ चेयर्स भी दिख रही है।

इसने ब्लैक कलर का जैकेट और की पैंट पेहनी हुई है।

जिसने जो है ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है रेड कलर का फ्रॉक सा पहना हुआ है।

यहां पर मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है और यहां पर मुझे तीन कुत्ते भी दिख रहे हैं।

बहोत ही बड़ा जो है एक खेत सा लग रहा है और दिख रहा है और यहां पर एक--

घास से बना हुआ एक झोपड़ी सी दिख रही है।

यहां पर बहोत से लोग भी हैं।

और कुछ लोग यहां पर चल रहे है एक लेडीस ने यहां पर साड़ी पहनी हुई है और यहां पर मुझे हरे कलर के पेड़ भी दिख रहे है।